सफेद रंग की दीवाल है बोहोत सारे काले रंग के पंखे लगे हुए हैं एक लाल रंग की कुर्सी भी रखी हुई है एक टीवी भी लगी हुई है।

इस तस्वीर में जो फोटो है ये एक होटल की है रेस्टोरेंट की है जिसके बाहर सफेद रंग की लाइट लगी है।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक दुकान की है आइसक्रीम की दुकान है इसमें मोर फ्लेवरस मोर फन लिखा हुआ है।

स्कूल या कॉलेज का लग रहा है जिसमें लाइब्रेरी जैसा दिख रहा है जिसमें बहुत सारे टेबल और कुर्सी लगे हैं बहुत सारे बच्चे यहां बैठे हुए हैं जो पढ़ रहे हैं।

जीसमें से पानी बहोत तेजी से बहे रहा है।

जिसके बाहर लाल रंग का बैनर लगा हुवा हैं।

क्योकि बहोत बड़ा बैंक है बाहर बहोत सारी गाड़ियां रखी हुई है।

इस तस्वीर में जो फोटो है ये किसी रेलवे स्टेशन का है।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक कार की है।